लाइटे दिख रही है शीशे दिख रहे है कुछ-कुछ समाने वगेरे भी दिख रही है साइड में एक बाइक भी दिख रहा --

सूरज की रोशनी भी दिख रही है छोटे-छोटे पत्थर भी दिख रहे हैं पेपर्स वगैरा भी दिख रही है।